कुछ गोल है तो कुछ रैक्टेंगल शेप की सभी का ढक्कन गोल है यहां पर बहुत सारे कपड़े भी सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक फोटो दिखाई दे रही है जो की एक कंपनी के अंदर की है यहां पर डिफरेंट शेप साइज और प्राइस के अकॉर्डिंग मशीनस रखी हुई है।

इस बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे पेड़ है इस बिल्डिंग का पिलर व्हाइट कलर से पेंटेड है और यह पूरी बिल्डिंग येलो और रेड कलर से पेंटेड है।